और यहां पर एक अंकल है जो कुछ काम कर रहे हैं और एक लड़का है वह भी कुछ कर रहा है और जोकि जो गेरेज है उसमें बोहोत सारा सामान रखा हुआ हैं। एक फैन लगा हुआ है। एक चेयर रखी हुई हैं और बोहोत सारा सामान ---

पूरा मंदिर ब्लू-ब्लू दिख रहा है। अंदर कुछ नारियल रखे हुए हैं। एक घंटी वगैरह लगी घंटी लगी हुई हैं। नारियल रखे --

लोहे की रेलिंग लगी हुई है जिस पे एक बड़ा सा पेड़ बंधा हुआ है जो कि एक रोड है फुटपाथ टाइप का बना हुआ है और रो जहाँ पे पेड़ बने हैं पेड़ लगे हुए हैं बड़ा से --

और म मंदिर का जो गेट है वहाँ पर व फूलों की माला लगी हुई है बहोत सारे लोग है वहां पर भीड़ है।